ग्रेप्स अमरुद है और अमरुद का कलर ग्रीन है और एक भैया हाथ लगा के फोटो खींच रहे है अमरुद खाने का मजा ही कुछ और होता है।